तल में बहोत सारे पड़े लगे हुए हैं।

दिखाई दे रहे हैं। यह एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम फैशन ए ब्रांड है।

बहोत से लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं ।

यह बहुत ही सुंदर और बड़ा बनाया गया है इसके सामने सड़क सुनसान पड़ी हुई है।